वह यहाँ पे खड़े हुए है यहाँ पे पहाड़ को खोदा गया होगा ये देखिए पहाड़ के नीचे यहाँ पे खड़े है लोग गुफा टाइप की बनी सी हुई है।

ये जिम है जो की काफी बड़ी जिम है यहाँ पे ये साइड में आ रहे जो की इन्हे --

और ये स्विमिंग पूल के नीचे काफी बड़ी बड़ी टाइल्स बगैरा है इन्हे टायर से लोग निचे स्विमिंग पूल में छलाग लगाते है जो की एन्जॉय करते है काफी --

ये जो तस्वीर नज़र आई है जो की पैट्रोल पंप की तस्वीर है यहाँ पे देख सकते है लोग यहाँ पे--

लोगो को टेक करता है यहाँ पे स्टेचू बगैरा है इनको ड्रेसस यहाँ पे रखी हुई है काफी बड़ा मॉल है जो की छत्तीसगढ़ का मॉल है।

यहाँ एक आदमी वाइट स कवर वाइट सेफ्टी कवर पहने खड़े हुए उसके पास एक लड़की है।

इ देख सकते है रेल्वे स्टेशन की तस्वीर यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे और जो ट्रेने यू खड़ी हुई है।